इसके पीछे बड़े-बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।

घराने में छोटे छोटे छेह खंबे नजर आ रहे हैं।

और एक बड़ी सी पानी का गड्ढा भी नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक आदमी हाथ में पानी का डब्बू लिए हुए दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य किसी स्कूल का है। इसमें लाल रंग की दीवारें दिखाई दे रही हैं।

इसके आगे दो बड़े-बड़े खम्भे हैं।

इसमें एक आदमी नाव को रस्सी से बांधकर लोहे के बड़े से हथियार में फँसा रहा है।

यह बड़ा नुकीला हथियार दिखाई दे रहा है। नीचे रेत दिखाई दे रही हैं।

इसके नीचे पानी नजर आ रहा है। पानी में ऊपर के प्रतिबिम्ब नजर आ रहे हैं।

एक वृक्ष सामने है। एक बड़ा-सा लोहे का बोर्ड भी लगा है। पीछे तीन मंजिला मकान दिखाई दे रहा है।